यह एक लाइब्रेरी के आगे का चित्र है इसमें बहोत सारे टू वाहन खड़े है।

यह एक घर में बंधी हुई है यह घर आधा कच्चा है और आधा पक्का है।

यहां एक सवाई मानसिंह की प्रतिमा लगी हुई है।

और यहां की कुर्सियां बहुत ही अच्छी है।